नीचे सोफा सेट रखा हुआ है।

कोट है कोट पे एक रुमाल--

है वो पता नहीं कौनसी है।

जहाँ लड़कियाँ डांस रिहसल कर रही है।

यह एक आदमी का समान ले रहा है दूसरा आदमी समान बेच रहा है यह दुकान का नाम है अम चिल्ड्रेन बुक --